यह एक बहुत सुन्दर और अच्छा आई.सी.आई. बैंक का फिगर दिखाया गया है ।

यहाँ पे बहुत अच्छा कार ऐसा मेहनत से बनाया जाता है जो कि बहुत कम दाम में कार बनाया जाता है जो कि दिखने में काफ़ी सुन्दर और मस्त है।